हमें जमीन में डिजाइन बना दिखाई दे रहा है।

हमें अ जाली लगी दिखाई दे रहीं हैं।

तस्वीर में हमें सड़क दिखाई दे रही है बी गार्डन की टाइल्स लगे हुए हैं बीच में और आसपास हरे-हरे पेड़--

इस तस्वीर में हमें जालियां लगी दिखाई दे रही हैं लोहे की जालियां हैं।

हमें एक तेजा बुक स्टॉल की दुकान दिखाई दे रही है।

तस्वीर में एक लोहे का गेट लगा है काले रंग का जालियां बनी है उसमें।

इस तस्वीर में हमें दिखाई दे रही है एक साइकिल है।

हमें दिखाई दे रहा है एक बैनर है।

और घास पर हमें हिरण की तस्वीरें नजर आ रही हैं।

हमें दिखाई दे रहा है छत में लाइटें जल रही हैं।

मानवी इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिकल लिखा है।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

अंदर दुकान में तस्वीरें दीवार पर लगी हैं।

और हमें मजदूर काम करते हुए नजर आ रहे--

इस तस्वीर में हमें हरी घास दिखाई दे रही है।

और दूसरा आदमी हमें नजर आ रहा है।

और हमें खिड़कियाँ नज़र आरी हैं बिल्डिंग में--

एक छत हमें दिखाई दे रही है जालियां लगी हुई नजर आ रही हैं।

हमें दिखाई दे रहे हैं नाम लिखा हुआ है मारिस पब्लिक स्कूल ।

इस तस्वीर में हमें बहुत सारे आदमी झुके हुए नजर आ रहे हैं।

बिल्डिंग बनी हुई है और ऊपर यूनियन बैंक --

वहां भी टॉप एंड टाउन का बोर्ड लगा है।

गाय सफेद और काले रंग की हमें दिखाई दे रही हैं।

एस_बी_आई का ए_टी_एम बना हुआ है।

इस तस्वीर में हमें महिलाएं दिखाई दे रही हैं और आदमी भी है।